नाव बढ़िया दिख रहा है सूर्य बढ़िया दिख रहा है।

अब आदमी बड़ पैसा म कटवाय हे टकली दिखत इधर इधर इहाँ सेलून बडियाँ दिखत हे।